और एक चित्र है जिस पर स्टेट बैंक लिखा हुआ है और पास में एक दुकान है जो कि बंद पड़ी हुई है।

कुछ बैठने के स्टूल भी है और सोफों पर वाइट कलर की पन्नी हो रखी है और रेड कलर व--

और इसके ऊपर एक ट्यूबलाइट दिख रही हैं कुछ लाइन भी दिख रही है।

और एक मुझे हरे कलर का पत्ता भी दिख रहा है।

कुछ का रंग नीला है कुछ पिंक है और व्हाइट है और इसमें मुझे पेले कलर के गद्दे दिख रहे हैं और छोटे-छोटे बूंदी वा। व्हाइट कलर का गद्दा भी दिख रहा है।

इस ढाबे में मुझे दो कार दिख रही है।

जैसे केले हो गए और इसमें सेब भी रखी हुई है और कुछ चिप्स भी है।